एक इंसान उसमें बाल्टी से कुछ डाल रहा है।

बहोत सारे ऑटो लगे हुए हैं।

और बहुत सारे बाइक और स्कूटी रुके हुए है।

बहुत सारा आदमी दिख रहे हैं एक पेड़ भी दिख रहा--

इसमे एक औरत प्रार्थना करते हुए दिख रही है।

इसमें लकड़ी भी दिखाया जा रहा है।

सामने में एक आईना भी है।

इस दृश्य में बच्चे की खेलने के जगह का एक हिस्सा दिखाया गया है।

तथा एक पाइप लंबी दिख रही है।

और एक बच्चे का खिलौना कार भी है।

इस दृश्य में एक मंदिर को दिखाया जा रहा है।

इस दृश्य में एक खाने के होटल को दिखाया गया है।

और इसमें बहुत सारे टेबल कुर्सी लगे हुए हैं जिसका रंग काला है ।

झंडा भी लगा हुआ है।

और एक कुर्सी भी है जिसका रंग काला है।

जो बाहर से दिख रहा है।

दो तीन पेड़ भी दिख रहे है हरे रंग के और रेस्टोरेंट के ऊपर बैनर पे मां भगवती रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

और इसमें पानी वाला फूहार भी लगा हुआ है।

इसमें हरे रंग की भिंडी है।